यह एक पेंटिंग है आ पेंटिंग को काफ़ी अच्छा बनाया गया है।

लोग इसे खाना पसंद करते है इसे खाने से शरीर में बहुत सारे फायदे होते है विटामिन ए मिलते हैं।

नदी में आके पानी में मछली माँरते है लोग आकर असनान करते हैं यहाँ का पानी साफ़ है।

यह पक्षी काफी ऊपर तक उड़ती है और यह छोटी- सी पक्षी होती हैं।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे है जो योगा कर रहे है यहाँ पर बहुत सारे लेडिस और--

जो मछलियां बेचते है लोग आकर इस मछली मंडी में से मछलियां खरीद कर अपने घर लेते है।